गद्दा है वो है नीले रंग का पीछे भी कई फर्नीचर नजर आ रहै है पर्दे नजर आ रहै है तथा--

ये फोटो देख सकते है एक व्यक्ति है जो कि चट्टान के नीचे गुफा नज़र आ रहा है उसने व्हाइट कलर की टी-शर्ट पहन रखी है।

दीवार पे कई रंग बिरंगे कलर हो रखे है पीले लाल और नीले तथा दीवार के बीचों बीच दो गेट भी नजर आ रहे है जो कि आसमानी कलर के है।

ये एक भवन है भवन काफी पुराना लगता है भवन के ऊपर का काफी पत्तियाँ है पेड़ो की हरी -हरी तथा भवन के अंदर भी--

त गया हैं पीले और लाल कलर की कन्याये भी बैठी हुई है उनके आसपास--

तथा यह शॉप है शॉप के अंदर एक व्यक्ति भी बैठा हुआ है जिसके आगे भी एक फूल है जो कि पीले रंग का है।

सामने दो बाइक भी दिखाई दे रही है ऊपर तार भी दिखाई दे रहे है खंभे से बंधे --